हर काउंटर पर अलग अलग चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही है।

हर टेबल चेयर के पास एक झूमर नजर आ रहा है पीछे में काउंटर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह लाइब्रेरी का डेस्क रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

यह एक लाइब्रेरी है।

बुजुर्ग व्यक्ति चप्पल पहने हुए हैं और नई बिना चप्पल की कड़ी दिखाई दे रही है।

दो सोफा लगा हुआ नजर आ रहा है यहां की वॉल पर बहुत सारी इमेज लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने में कुछ कपबोर्ड भी रखे हुए है वहां पे काउंटर पे बोटल भी दिखाई दे रहा है यहां का दरवाजा खुला हुआ है।

यहां पर अंडे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर एक वाइट कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

ऊपर में फैन नजर आ रहा है।

यह एक कैफे है कैफे के बाहर में उसका नाम भी दिखाया गया है यहां पर काले रंग का टेबल चेयर लगाया गया है।

इसके साइड साइड में बहुत सारे लाइट भी लगाया गया हैं।

दुकान के अंदर में टी_वी स्क्रीन भी बना हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे कार इंश्योरेंस कार वॉशिंग और कार रिपेयरिंग भी किया जाता है।

नोटिस बोर्ड में हैप्पी दिवाली लिखके लगा गया है।

सभी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट करते नजर आ रहे हैं।

यहां पर रंग बिरंगा फुल नजर आ रहा है।

टेबल के ऊपर में गुलदस्ता भी रखा हुआ है।

यह अ डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क है।

यह एक रेल की छवि है जिसमें इंडियन रेलवे लिखा हुआ है आगे में रेलवे ड्राइवर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे लाइटिंग दिखाई दे रहे हैं यह इमारत बहुत सुंदर और आकर्षित है।

यह एक कोई सरकारी प्रोग्राम के तरह नजर आ रहा है।

यहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और आकाश एकदम स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

गुलाब पर पानी का छिड़काव किया गया है।

छोटे और बड़े हर बच्चों की साइकिल दिखाई दे रही है।

दीवाल पर स्वास्तिक की इमेज बनी हुई है।

एक दरवाजा यहां बंद दिखाई दे रहा है यहां पर तरह तरह की गाड़ियां लगी हुई हैं।

रोड के बीचों बीच दो बाइक लगे हुए नजर आ रहे हैं।

दूर में बहोत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है जिस पर खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहां का खेत बिल्कुल हरा भरा है।